इस तस्वीर में एक साइन बोर्ड दिखाई दे रही है बैंगनी रंग के सफेद अक्षरों से कुछ लिखा गया है।

इस तस्वीर के नीचे मंजिल पर काफी सारे पेड़ लगा हुआ है और पानी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक घर दिखाई दे रही है घर का रंग सफेद है।

इसमें एक औरत को बुर्खा पहनते हुए दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में टीन का गेट दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में रस्ता दिखाई दे रही है और एक इंसान और छोटी बच्ची।

इस तस्वीर में कई सारे लोग दिखाई दे रहीं है।

इसमें एक ए_सी भी लगाया हुआ है और उसमें काफी सारी लाइट दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में पहाड़ दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में काफी सारे हरियाली दिखाई दे रही है।

दरवाजे का रंग माटिया रंग का है।

इस तस्वीर में बच्चे लोग डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में सफेद आसमान दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक कमरा दिखाई दे रही है।

तस्वीर मे बहोत ही बड़ा नदी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मटिया रंग का केक दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में नीला आसमान दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में दुकान दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में नील और सफेद रंग की बैलून है।

इस दृश्य में काफी सारे लोग दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में लाइट पोश दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में नदी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में कमल के पत्ते दिखाई दे रही है जिनमें कई सारे अलग पौधे भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक मंदिर दिखाई दे रही है।